यह एक किसी का फेक्टरी है यह फेक्टरी बहुत बड़ा फेक्टरी हैं और यहाँ बहुत चीजे बनाता है।

बहुत पानी शुद्ध होता है। यहाँ बहुत मछवारे लोग मछली पकड़ के अपना गुजारा करते --

यह एक गारमेंट्स लेडिज --

यहाँ पर कुछ बच बहुत बच्चे हैं जो योग कर रहें --

जूता मिलते है जैसे हूड़लएंड एडीडास स्पार्क और बहुत सारे जूते मिलते है बहुत अच्छे-अच्छे जूते मिलते है कम दाम में भी यहाँ मिलता है और बहुत महँगे दाम में भी जूता यहाँ मिलते हैं |

और बगीचों की देखते हैं और घूमने के लिए भी बहुत आदमी आते हैं और यहाँ बहुत पेड़ हैं जो बहुत हरियाली लग रहा है बहुत आक्सिजन मे पर ये बहुत अच्छी बात है।

ये हमे आक्सिजन प्राप्त करत है और ये पहाड़ बहुत बडा है ।